कुछ डीश पड़ी हुई दिख रही है यहाँ डीश मुझे अ ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है जिसपर धनिया भी पड़ा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्टर में मुझे दो कपल्स दिख रहा हैं एक कपल दिख रहा है।

इनमें पेड़ों का कलर मुझे ग्रीन दिख रहा है। इसमें कुछ पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर आसमान भी दिख रहा है।

इसमें में फ्लावर्स भी दिख रहे है । नीचे मुझे चैट्स लगी हुई दिख रही हैं और कुछ लोग भी दिख रहें है ।

इसमें शॉप का शटर मुझे वाइट कलर का दिखाई दे रहा हे । शॉप के ऊपर एक पैनर लगा हुआ है जिस पर सिटी स्टोर लिखा हुआ है।

टेबल ब्राउन कलर के दिख रही है। बीच में खम्बे लगे हुए दिख रहे हैं। ऊपर की तरफ लाइट्स लगी हुई दिख रही हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है। लड़के ने पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है।

ऊपर की तरफ पंखे भी दिखाई दे रहे हैं जोकि ब्लैक कलर के हैं। इसमें दीवारों में कलर मुझे येलो दिखाई दे रहा है।

तीन पंछी दिखाई दे रहे हैं जोकि सफेद और ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं।

में मुझे पेड़ और पौधे भी दिखाई दे रहे है नीचे की तरफ मुझे पानी भी दिख रहा हैं।

नीचे की तरफ मुझे जाली दिखाई दे रही है जोकि लोहे की है।

ऊपर के तरफ मुझे कुछ स्टेच्यु बने हुए दिख रहे हैं जोकि जानवरों के दिख रहे है अ इसमें ब्लैक कलर के स्टेच्यु लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक चाचा दिखाई दे रहे है जिन्होंने सिर पर व्हाइट कलर की टोपी पहनी हुई है। चाचा ने कंधे पर एक रुमाल डाला हुआ है।

जो इसमें मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने ऑरेंज कलर का शर्ट पहना हुआ है। य मुझे कुछ लोग बैठे हुए भी दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में मुझे अ एक घर दिखाई दे रहा है जोकि दो मंजिला का दिख रहा है। इसमें मुझे खिड़की --